यहाँ पर इटों घर दिखाईं दे रहा है और उधर पर पानी की नीले कलर की टंकी दिखाई दे--

--और यहाँ पर आसमानी कलर की दीवाल दिखाई दे रही है जिसपे खंभे है और यहाँ पर लोहे की कुछ लगा हुआ है और यहाँ हरे कलर के बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है ये ट्रेन की पटरी है असल म।

थोड़ा सा आसमान दिखाई दे रहा है ग्राउंड मे छोटी - छोटी दुर्बा भी लगी हुई नजर आ रही है और ये काफी हद तक सुंदर दिखाई दे रहा है।

गेट दिखाई दे रहा है और एक रोड दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक महिला आते हुए नजर आ रही है और साईड मे एक कुंटी सी दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ स्कूटी या मोटरसाइकिल खड़ी है और व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

और एक और साइड में खड़ी हुई है और यहाँ पर रोड के दाए-बाए साइड बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और सफेद कलर का एक कार्यालय दिखाई दे रहा है जो की कुछ ज्यादा ही बड़ा है और यहाँ पर आसमान भी--

एक खेल परिषद दिखाई दे रहा है जिसके बाहर मे दो एसी भी दिखाई दे रहे है और साइड मे दाई बाई साइड दो दो एसी के कंडेक्शन दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बड़ा सा लोहे का गेट दिखाई दे रहा है और गेट के दाएं-बाएं एक सफेद कलर की दीवाल दिखाई दे--

--कांच है और टाउन होटल के पीछे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है और साइड मे एक--